ये के बज़ार का मुनाज़िर है जहाँ पर अ बहुत ही अम अ बहुत ही ज़्यादा अम आ नाद्रिक अ नागरिक मौजूद हैं जहाँ पर--

ये पिंजरा जाली का बना हुआ है और साथ में बहुत सारा दरखत दरखत भी मौजूद हैं।

और वो बच्चे कागजों के साथ बहुत सारी चीज़े बना बनाने में मशरुफ़ है और ये एक अ बेंच के ऊपर ये मे एक बेंच के ऊपर काम कर रहे है जो --

दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक ईटों की लाल रंग की दीवार बनाई हुई है।

है यहां पे एक नागरिक ने जामुनी रंग की शर्ट और काले रंग की पेंट भी पहनी हुई है ओ--

ये एक बिल्डिंग के बाहिर का मुनाजिर है जिसका गेट मुकतलिब रंगों से बना हुआ है इसमें मल्‍टी --

इस जगह पर बहुत ही पथरिली सी जगह दिखा मालूम हो रही है और साथ में बहुत अप बिल्डिंग भी दिखा मालूम अ होती है ।

बिरयानी है जिस कारण सफैद ओर पिलाया इसमे गोष्ट भी पड़ा हुआ है और साथ में ये स्टील की प्लेट में मजूद है।

ये एक कमरानुमा गैलरी है जहां पर अब ये ऊं जिसका रंग क्रीम जिसका रंग क्रीम है और इसके नीचे मारबल ए--

और इस जगह पर एक मेज के ऊपर पीले रंग के ये काफी डब्‍बे मजूद है और साथ --

जिसमें ऐं ये ये जिसमें एक बच्‍चे की तस्‍वीर दिखाई दे रही है और साथ में ये ला ये लाल ट्रंग की टोकरी है।

ये एक जिम जिम का मंज़र है जहां पर एक नागरिक हाँ अपनी --

ये एक दुकान का मंजर है जहां पर दो नागरिक दिखाई दे रहे हैं और यहां पर एक बोर्ड पर एयरटेल फोर जी लिखा हुआ है।

यहां पर एक थाल भी रखा हुआ है जिसमें दो छोटी छोटी कटोरियां रखी हुई है साथ में एक टोकरी भी रखी हुई है जिसका रंग यामिनी है।